यह एक गौशाला है।

दुकान में एक लाइट लगा हुआ--

रखा हुआ है हुआ है।

यह एक फैक्ट्री है इसमें बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं इसमें तीन पिलर है ।

लाइट का तीन लगा हुआ है।

बहोत सारे आदमी पीछे खड़ा हुआ--

हाथ में लेफ्ट में घड़ी है एक बैग टंगा हुआ है व्हाइट कलर का शर्ट पहना है।

यह एक दुकान है या घर है।

आगे एक टोटो है एक टेबल है इसमें एक जार है।

यह एक स्टेज है जिसमें कोई फंगसन होने वाला है यह सजा रहे है।

पीछे त्रिपाल लगा हुआ है दो भइया खड़े हैं।

एक भी बहुत भी तिरपाल लगाए हुए हैं।

आगे सामने पुट्टी मारा हुआ है व्हाइट कलर का ऊपर में भी है ऊपर में एक झंडा दिख--

यह एक मोबाइल का शॉप शोरूम है बड़ा सा इसमें ओप्पो कंपनी का है।

आगे गेट पे बहुत सारे फूल लगे हुए है।

यह एक बस स्टैंड है पीछे एक बिल्डिंग है।

दो चाचा मिल के उतार रहे हैं नीचे एक चाचा ट्रक के ऊपर से उतार रहे हैं।

आगे सामने रात का समय है।

जिसमें मशीन लगा हुआ है।

फोटो पे माला हार चढ़ाए हुए हैं टेबल लगाया हुआ है।

बहुत सारे जीन्स टंगा हुआ है टेबल है।

नीचे वाइट कलर का कुर्सी लगा हुआ है।

शिव मंदीर के सामने खड़ा हुआ है एक लड़की भी सामने खड़ा हुआ--

यह एक सुंदर सा बेडरूम है जिसमें दो बेड लगाए हुए एक बेड में एक तकिया है।

बेड में दो तकिया है इसमें कंबल लगाए हुए हैं।